यह किसी का मकान है। सामने की गेट दिखाई दे रही है। ए गेट हरे रंग से पेंट की हुई है। गेट की दीवारे व्हाइट कलर से पेंट की हुई है।

ये एक हेयर कटिंग की दुकान है। यहाँ लोग अपने बाल कटवाने के लिए आते हैं। बाल कटवाने के लिए दाड़ी बनवाने के लिए।

दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं।